एक जैकेट टांगा हुआ है एक बाइक भी लगा हुआ है अंदर मे एक जेन्स --

एक पतीला में रखा हुआ है।

रास्ता बना हुआ हैं बहुत सारे कलर किए दीवार दिख रहे --

लड़के-अर सब खड़े हैं बहुत आदमी खड़े दिख रहे हैं।

दो गीत गेट देख रहे हैं गेट नजर आ रहे हैं और एक टी.वी. लगी हुई है।

व्हाइट कलर के बाई बाइक लगे हुए हैं मोटरसाईकिल लगे हुए हैं ।

गणपति पप्पा का मूर्ति बना हुआ है।

चेयर लगा हुआ है स्टील का चेयर है।